यहां कोई ठंडा एरिया दिखाई दे रहा है।

ऊनी कपड़े पहने हुए हैं और एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

छत पे पीले कलर का एक झूमर लगा हुआ है।

और सामने की दीवालो पे अच्छी अच्छी टाइल्सें भी हैं।

टेस्ट करके है और यहां पर कई गाड़ियां भी खड़ी स्कूटी स्कूटी भी खड़ी हुई हैं।

और पूरे घर में टाइल्स से घर बना हुआ है।

हां पास में रोड के बीच में एक डिवाइडर है।

यह एक होटल की तरह होटल या बेकरी की तरह दिखाई दे रहा है।

कांच के एक पूरा शटर वो बना हुआ है।

और एक वॉटरफॉल चल रहा है।

यह एक होटल गेट कन वे कर्नाटका है।

और यहां पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यहां पर कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो लोग लगता है यह होली में होली का रंग खेले हुए हैं।

जिसमें से सभी के चेहरे पर रंग लगा हुआ है। पीछे एक अच्छा सा छोटा सा घर बना हुआ है।

छोटे छोटे हरे कलर के पौधे और पेड़ भी हैं।

तथा यहां पर कई लोग कई मुसलमान खड़े हुए हैं।

तथा यहां पर ये कई छोटी सी दुकान भी है और ब्लैक कलर के दरवा--

तथा शिवाजी की मूर्ति यहां पर है वहां वहां पर नीचे जीने भी--

तथा बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे नीचे कई लोग खड़े हैं।

और सामने एक बोर्ड है जिससे बुक एंड बुक लिखा हुआ है।

और कई लोग यहां पर एक्सरसाइज या जिम भी कर रहे हैं।

दो पुतले भी है और एक कुछ कॉलेज की तरह दिखाई दे रहा है।

कई कुर्सियां भी हैं ऊपर की जो छत है वह बहुत देखने में सुंदर लग रही है क्योंकि उसमें--

लाइटें और अच्छी अच्छी कलर की टाइल्स लगी हुई है डिजाइन है।

सामने एक सफेद गाड़ी खड़ी हुई है।

और कई थोड़ी दूरी पर पहाड़ जैसे कुछ दिखाई दे रहे--

और एक व्यक्ति फल को टच करते हुए खड़ा है।

दो पिलर लगे हुए हैं जो चमक रहे हैं।

देखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है या एक--

दीवार पे कई अच्छी डिजाइन बनी हुई हैं।

नीचे की टाइलसे देखने में सुंदर दिखाई दे रही है।